रोड पे एक इंसान चलता हुआ दिखाई दे रहा है दुकानों के ऊपर बोर्ड टंगे हुए हैं जिस पे सोनी--

उसके सामने एक झोपड़ी भी लगी हुई हैं झोपड़ी का रंग --

हरा प्रतीत हो रहा है पीछे कुछ पेड़ भी है पिछ पेड़ के पीछे कुछ पहाड़ियां भी है दिख रही है और देख कर पता चल रहा है यह दिन का समय है।

पास में ही एक ए_टी_एम है ए_टी_एम के ऊपर एक्सेस बैंक लिखा हुआ और उसके नीचे ट्वेंटी फोर इंटू सेवेन ए_टी_एम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ।

इसमे से एक इन्सान ने हरे रंग का शर्ट एक ने सादे रंग का शर्ट और एक ने नीले रंग का शर्ट पेहना हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये एक रोड का दृश्य दिखाई पड़ रहा है रोड के ऊपर कई गाड़ियां और बसें दिखाई पड़ रही है --

एक बस जिसका रंग सादा है जिसके आगे में वातानुकूलित ए_सी लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है।

ऊपर में एक पोस्टर टंगा हुआ है जिसमे डीज़ल और टूल लिखा हुआ दिख रहा है सामने एक लाल रंग की बाल्टी भी दिख रही है जिसपे फायर लिखा हुआ है ।

एवं एक बाई का रंग नीला दिख रहा है सामने कुछ इंसान खड़े हैं जिनमें से एक इंसान ने--

लाल रंग का शर्ट और एक इंसान ने व्हाइट रंग का शर्ट पहना हुआ है पास ही में एक बिल्डिंग भी है जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ब्लॉक लिखा हुआ है।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं ये एक गार्डन के अंदर का दृश्य है गार्डन में कई छोटे एवं बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और गले में लाल रंग का नेक बैंड लगाया हुआ है दिख रहा है उसने काले रंग का शर्ट पहना हुआ है और हाथ में बोतल पकड़े हुए दिख रहा है पीछे की ओर--

पत्थर पे फूलों द्वारा सजा की गई है दिखाई दे रहे हैं पीछे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे जिसके पत्तों का रंग हरा है।

पास में कुछ दरी बिछाई गयी हैं जिनमे कुछ इंसान बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं --

बीच में कुछ कुर्सी लगाई गई है जिनका रंग लाल है और एक इंसान बैठा हुआ है जिसने सादे रंग के कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं एक--

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यह एक और दुकान के बाहर का दृश्य है दुकान के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर सिटी कार्ड लिखा हुआ है।

और उसके ऊपर फ़ोटी पर्सेन्ट ऑफ का पोस्टर लगा हुआ है सामने की ओर काले रंग के सीढ़ियां भी हैं।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सामने कुछ स्‍कूटी और बाइक लगे हुए हैं स्‍कूटी का रंग नीला एवं बाइक का रंग लाल है।

पीछे की ओर कुछ झाड़ियां भी दिखाई दे रही है झाड़ी उसका रंग हरा प्रतीत हो रहा है।

बीच में पोस्टर भी लगा हुआ जिस पर डोंट पार्क द व्हीकल प्रोवाइड एरिया लिखाई पड़ रहा है।

इमारत के बाहरी भाग में रैलिंग भी लगी हुई है नीचे की ओर देखा जाए तो कुछ बाइक और स्‍कूटी लगी हुई है।